हाय मैं केशव जहाँं मेरे को पेड़ दिख रहा है और उधर कुछ गुंबद टाइप दिख रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या है।

और बहुत हरे भारे पेड़ हैं बहुत लंबे पेड़ हैं।

यहां पर गाय बांधी हुई है है ना एक गाय अपने बछड़े की ओर देख रही बछड़ा इधर देख रहा है।

ये यहां पे कुछ गुफा टाइप का बना है जहां शायद एक हाथी की प्रतिमा --

यहां पे कुछ वर्क चल रहा है।

ये एक गोरिला का पुतला है जिसके पास में पेड़ पोधे है।

है ना कुछ सॉफ्ट टाइप का लग रहे।